''इस स्कूल में बेंच पे बैठ के सभी लड़के अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं टीचर मैम चेयर --''

इस दूकान में कंप्यूटर है। एक चेयर रखा हुआ है सभी लोग यहाँ आते है।

यहाँ सभी तरह के काम होते है। गैरेज से हम लोग --

यहाँ सोमवर को काफी सारी भीड़ लगी रहती है यहाँ एक दान-पेटी भी है।

इस मोर में हमलोग बहुत सारे आदमी को मोर पसंद है यह मोर बहुत ही अच्छा नाच --

इस मिठाई की दूकान से हमे सारी चीज मिठाई मिलती है ।

इस दुकान में बहुत अच्छी-अच्छी मिठाई अच्छी मूल्य पे मिलती है।

यहाँ पानी बहुत ही गंदा है सभी लोग यहाँ से खेती करते हैं सिंचाई करते हैं।

ए.टी.एम. से हमे बहुत सारी सुविधा मिली है यहाँ से हम लोग पैसे निकालने के लिए ए.टी.एम. द्वारा आते हैं।